छोटा सा यह रेस्टोरेंट दिख रहा है बाहर में रेस्टोरेंट के सामने गेट के--

और कुछ हरे भरे पौधे भी हमें नजर आ रहे हैं।

बालों में हेयर बैंड भी लगा करके बैठे हुए हैं।

सड़क के किनारे के यह जो हमें बड़ा सा दुकान दिख रहा है। बचत बाजार इसका नाम है। अंदर हमें बहोत सारी समाने--

बहोत ही बड़ा सा यह भवन हमे दिख रहा है।

पानी की ग्लासेस भी दिखाई दे रही है और यहां पर हमें--

बहोत ही बड़ा सा यह कोई गांव का कोचिंग सेंटर है। जहां पर बच्चों के बहोत सारे साइकिल्स हमें दिखाई दे रहे हैं।